छोटे-छोटे पत्थरे भी दिखाई दे रही है कुछ दूर में घर बने हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र मे एक दुकान दिखाई दे रहा है।

दूर-दूर मे एक तालाब दिखाई दे रहा --

कई सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी नजर आ रहे --

कई सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

आस-पास हरि-भरि पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

कुछ अलग-गलग तरह के सामान भी नजर आ रहे हैं।

जिसमे हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र मे कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं।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

कुछ एल.इ.डी स्क्रीन्स दिखाई दे रहीं हैं।

कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।